ये इसमें एक टेंट लगा हुआ है इसमें लाइटे लगी हुई है।

सामने एक इमारत दिखाई दे रही इसमें इसका रंग काला--

कुछ पाइपें दिखाई दे रही हैं एक बांस दिखाई दे रहा है नीचे हरी घांस है।

नीचे कुछ और वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग नीला है।

सामने और कुछ और घर भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक दुकान दिखाई दे रहीं हैं जिसका शटर एक लाल हैं।

इसमें कुछ बूफर रखे हुए हैं।